और काफी आकर्षिक दिखता है और उसकी वैल्यू बड़ जाती है।

जो लेटर बॉक्स होता है उसका दृश्य है।

कमरे के सुन्दरता को और बढ़ाता है।

जहां पर एक स्विफ्ट कार लगी हुई दिख रही है।

अंदर पार्टी फंक्शन चल रहे हैं। बाहर गुब्बारे वगारे लगे हुए हैं।

यह एक फुटपाथ का दृश्य दिख रहा है।

लुप्त उठा रहे हैं हालांकि आप प्रकृति के साथ-साथ --

और उसके बॉर्डर में ऑरेंज कलर का कलर किया गया है जो की थोड़ा सा येलो दिखने में लगता है जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसके --

कॉलेज अच्छा नहीं होना चाहिए उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट और पढ़ाने वाले शिक्षक भी --